यह जो अलौकिक चित्र आप देख रहे हैं यह जो अलौकिक चित्र आप देख रहे हैं।

वो मुस्कुराते हुए निकल रहे है शायद इनका जो पेपर है ऊ पूर्ण रूप से अच्छा --

और कोकरा का जो स्वाद होता है वो बहुत ही अजीब लगता है लेकिन बहुत सारे लोग इसे खाना पसंद --

यह जो दृश्य है वह एक स्टेशनरी दुकान का दृश्य है जहाँ पर एक व्यक्ति लड़का बैठकर फोन कान में लगाकर और किताब का लगता है शायद डीलिंग कर रहा है किताब को शायद बेच रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है।